शॉप में शॉपकीपर बैठे हुए हैं।

पेट्रोल पंप के बाहर बिजली का खंभा लगा हुआ है।

जिसमें सिटी के सारे राश्ते भीड़ के कारण जाम दिखाई दे रहे हैं।

जिस पर एक नर्तक महिला नृत्य करती हुई दिखाई दे रही है।

यहां पर औरतों के साथ-साथ बच्चे पुरूष दिखाई दे रहे हैं।